बेटर लाईफ़ फ़ार्मिन्ग --

और दूसरा वाला तो --

पत्थर ही पत्थर दिखाई दे रहा है।

केसरिया रंग गुलाबी रंग काला रंग सफेद रंग नज़र आ रहा है।

यह बहुत पुराना बिल्डिंग है और मुझे लग रहा है यह मंदिर है और यहाँ पर बहुत ज्यादा पेंट बना हुआ है पत्थर का और यहाँ पर पूरा चारों तरफ पत्--

ऊपर टाइल्स भी लगा हुआ नज़र आ रहा है ऊपर में पंखा भी है लाइट भी चल रहा है और यहाँ पर बहुत सारे लोग पढ़ने-लिखने के लिए आते है।